एक फोटो कॉपी करने वाला मशीन है मशीन के जस्ट सामने में एक--

जस्ट सामने में एक फ्रीज भी रखा हुआ है एक--

एक बड़े सा फील्ड है फील्ड के जस्ट सामने में ढेर सारे गाछ लगा हुआ है और फील्ड जस्ट सामने में एक बल्ब भी है जो--

जो है वो दूध दे रहे हैं और भैंस दो चराने वाले हैं और जस्ट किनारे में दो पैर लगे हुए हैं।

हार्ड हार्ड झाड़ वाला काम कर रहा है जो रघुवर से नहीं हो रहा है वह लेजी है रघुवीर।

और दो आदमी भी है और जस्ट सामने में दो पंखे लगे हैं।

बिस्कुट वगैरा और जस्ट सामने में एक आदमी खड़े हैं।

टी टी शर्ट है जो रेड बुलु और व्हाइट कलर के हैं।